की दुकान है तो एक भैया लोग वही पर बैठे हुए है एक बड़ा सा झूला लगा है बगल में रोड है बाइक है एक उम्म --

ए.टी.एम. देखने से बड़ा सा लग रहा है। हरे-हरे पेड़ लग रहा है। बगल में रोड भी है। बहुत अच्छे लग रहे है हरे-हरे कलर के एक बड़ा-बड़ा है और बहुत अच्छी लग --